एक दुकान है दुकान में अंदर एक आदमी हुआ है आदमी है ऊपर में बोर्ड पर लिखा हुआ है लाइट भी लगा हुआ है एक थोड़ा-सा चित्र बना हुआ है।